या एक बो अंडा को आमलेट है नीचे पत्तों हैऔर एक प्लेट है धोले रंग की हरे रंग को सो पत्तों है हरी रंग की सी सब्जी है।

ये टेबलेट है छोटा कीपैड फ़ोन भी है जिओ फ़ोन के ऊपर तो जिओ इंडिया का स्मार्ट फ़ोन है र।

बा एक पीले पीले रंग को आदमी पैर राखी है एक और इन्न कोटि है जो धोला धोला रंग की है र बीम लाल लाल सा कपड़ा है।

ऊपर न अगरबती लगा रखी है एक मोमबत्ती लगा रखी है दो नारियल पड़या है इन्न टेन आ रो कोठों सो है।

हरया हरया सा पेड़ दिखे है फिका हरया भी दिख है और जमा हरया भी दिखे है काला भी देखन लग रिया है अब एक पहाड़ के ऊपर काला स दिखन लग रिया है एक हरयो दिखन से मा उनने एक ला लुगाई सी दिखन लग रिया है और एक आदमी है।